तो आप देख सकते है यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेटिंग किया गया है।

तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैलून है । बहुत अच्छा सैलून है । बहुत अच्छा भी लग रहा है । बड़ा भी है ।

बोहोत अच्छा लग रहा है।

और बहुत सुन्दर-सुन्दर केक है आदमी देखिये एक आदमी केक ले के खड़ा है कितना सुन्दर लग रहा है।

सैलून बोहोत अच्छा है। बोहोत सुंदर लग रहा है। देखिये आप भी बोहोत अच्छा ही है। बोहोत अच्छा लग रहा है।

और बोहोत बड़ा-बड़ा दिवार ये देख सकते है यहाँ पे। बोहोत अच्छा लग रहा है देखने में भी।

तो आपको दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे मंदिर है।

आसमान भी कितना साफ है और साइड में कुछ झूले भी लगे हुए हैं।

सब देख सकते हैं एक मछली का दुकान है।

तो आप देख सकते है यहाँ पे एक माँ दुर्गा का मंदिर है।

बोहोत सारे तरह-तरह के हैं बेबी डॉल्स देख सक --

तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहोत सारे बच्चे लड़का-लड़कीयाँ यहाँ पे डांस सिख रहे हैं और एगो अंकल एने डांस सीखने बहुत अच्छे --

बोहोत सारे बच्चे यहाँ पे डांस सीख रहे है देख सकते हैं।

फिर स्टेशन के जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है।

तो आप देख सकते है यहाँ पे काफी अच्छा सैलून है।

आसमान भी कितना साफ है देख सकते हैं।